बैनर भी चिपकाए गया है जहां पे नीचे जमीन में चूने का लाइन बनाया गया है।

बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं। दुकान के बाहर सड़क हैजहां पर कुछ बाईकें खड़ी हुई हैं।

पौधे लगाए गए हैंएक बड़ा सा बिजली का खंबा है।

लाइटे जलाई गई है नीचे मार्बल का जमीन है।

यह एक इलेक्ट्रिनिकल दुकान का दृश्य है जहां पे कुछ चेयर रखी गई है कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

उसके सामने एक बच्चा है जोकि पीले कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

यह दृश्य एक दुकान की है जिसके ऊपर लिखा गया है देवघर वस्त्रालय।

एक व्यक्ति जोकि बैठा हुआ है जहां पर बॉक्स में बहुत सारा सामान और बैग रखा गया है।

बॉक्स भी रखे गए हैं बहुत सारे लाइटिंग लगाए गए हैं।

बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं गायक आए हुए हैं जो कि माइक लगाए गए हैं कुछ गा रहे हैं।

यह दृश्य एक रूम का हैजहां पर एक बेड हैं बेड पर बिस्तर बिछाए गए हैं कुछ तकिया रखे गए हैं और कंबल भी रखे गए हैं।

यह एक जगह की दृश्य है जिसके सामने एक रेड कलर का दीवार है जहां पर नफीशाजहां लिखा गया है।

यह दृश्य एक रेस्टोरेंट का है जहां पर बहुत सारे पानी के बोतल रखे गए हैं।

छोटे-छोटे लीची बाल लगाए गए हैं बहुत बैलून सजाए गए हैं दीवालों पे।

पर्दे का बना हुआ पंडाल के अंदर है जहां पर बहुत सारी पानी की बोतले रखी हुई है।

एक व्हाइट कलर का टेबल है जिसके ऊपर बहुत बॉक्स रखे गए हैं।

दुकान की दीवारे व्हाइट हैं।